दी गई चित्र में हम देख पा रहे है कि यहाँ पे जो खुली सड़कें है वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है और जे है आहा ओ सभी वो जो है हमें सिर्फ झाड़ ही झाड़ नज़र आ रहे है वहाँ पे जो है बैठने के लिए जो एक लकड़ियों का बना हुआ एक टेबल नज़र आ रहा है जो --

वही भी हमे जो छत पर चढ़ने के लिए वहां पे जो एक सीढ़ी लगी हुई नजर आ रही है आवे जो रैड कलर की और सफेद कलर के ट्रक ओ-और ब्लू एंड वाइट कलर की जो है कार नजर आ रही --

वहाँ पे हमें जो है पेट्रोल पंप का जो है गेट नजर आ रहा है जो खुला हुआ है वहाँ पे जो है ताला लगा हुआ है वहाँ पे हमें जो है काफी सारे बैनर नजर आ रहे हैं वहाँ पे हमें जो है पेट्रोल पंप जो है कुछ काउंटर नजर आ रहे है जिसके सामने छोटे-छोटे झाड़ नजर आ रहे हैं।